बैनर के नीचे एक कांच का गेट भी लगा हुआ है जिसको हरे हरे हरे व्हाइट और ऑरेंज कलर के बलूनों से सजाया गया है।

ये गमले के नीचे भी छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें फूलों से सजाया गया हमको सामने कुछ दिखाई दे रहा--

यहां पर डॉग की खाने का सामान भी दिखाई दे रहा है।

गार्डन में तारों वाली रेलिंग की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है।